इस फोटो में एक ट्रैक्टर का खेती करने वाला एक मशीन रखा दिखाया गया है।

पीछे बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ भी लगे दिखाए गए है।

यह फोटो किसी तालाब का फोटो दिखाया गया है।

और कुछ सामान पॉलिथीन में भी पैक करके अलमारी में रखा दिखाया गया है।

जिसमें बहोत सारे पौधे लगे हुए दिखाए गए हैं एक सीढ़ी भी दिखाई गई है।

और एक बड़ा सा बिल्डिंग भी बना हुआ दिखाया गया है।